ये एक क्रिसमस फंक्शन है यहां सांता क्लॉस और एक दो लड़की खड़ी है।

यह एक ए.टी.एम. की जगह है यहां दो लोग खड़े हैं।

ये एक कंस्ट्रक्शन जगह है | यहां एक घर बन रहा है।